इस इमेज में हमें एक साउंड की गाड़ी दिखाई दे रही है जिसमें साउंड रखा हुआ है साउंड में एक ब्लैक कलर की डी_जे रखें हुए हैं।

इस इमेज में हमें मस्जिद दिखाई गई हैऔर मस्जिद की दीवाल का कलर हमे ग्रीन और वाइट -- दिखाया गया है।

और इसके आगे कुछ गाड़िया रखी हुई हैंकुछ स्कूटीया रखी हुई हैंउम्म यहा एक बोर्ड लगा हुआ हैं जो व्हाइट कलर का हैंऔर इसके आगे बड़े-बड़े से पेड़ भी लगाए गए हैं।

इस इमेज हमे एक एक दुकान दिखाई गई है जो ऑटो पार्ट्स की है यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसमे गाड़ी बनी हुई है।

नीचे यहाँ पे बाइक के कवर टंगे हुए है और इसके अलावा ऊपर हम थोड़ा- सा आसमान दिखाया गया है जो स्काई ब्लू कलर का दिखाया गया है और नीचे चेयर्स रखी हुई हैं।

इस इमेज में हमें बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई गई है और यहाँ पर उम्म्म् नीचे एक गेट लगा हुआ है जिसपे एक बैनर लगा हुआ है। यहँ बैनर या ये येलो कलर का है।

सामने हमें बहोत सारे पेड़ दिखाए गए हैं बड़े-बड़े से और उसके बीच यहाँ पे लाइट लगी हुई हैं और सामने हमें एक आ लड़का भी दिखाया दे रहा हैं और यहाँ पर कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमें यहाँ पे एक मस्जिद दिखाई गई है मस्जिद में दीवाल का कलर ग्रीन है और व्हाइट दिखाई दे रहा हैं।

कुछ गाड़ियां रखी हुई है कुछ साइकिल रखी हुई है इसके अलावा कुछ लोग भी दिखाए गए हैं औ--

इस इमेज में हमें यहां पर एक बिल्डिंग दिखाई गई है बिल्डिंग का कलर व्हाइट है और यहां पर नीचे पानी भरा हुआ है ये स्विमिंग पूल दिखाया गया है जिस में--

और साइड हमे कुछ मकान--